साथ ही यहाँ कुछ जिम की वस्तुएँ भी रख हुई रखी हुई हैं यहाँ एक ट्रेनर उसको ट्रैन कर रहा हैं की किस तरीके से जिम की वस्तुओं का उपयोग करना हैं।

बस स्टॉप जहाँ बहुत सारी बस आकर रुकती हैं और एक समय के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करती हैं।

यह मीनार बहुत ही आकर्षक और रोचक है लोग यह देखने आते है।